जिसके नीचे कुछ ट्राफियां भी रखी हुई है और लाइटें भी लगी हुई है।

तस्वीर में एक कंप्यूटर नजर आ रहा है।

एक आदमी बाइक के पास पड़ा हुआ है।

और इसमें कुछ लाइटें भी नजर आ रही हैं।

पल के आशा पीछे की और कुछ बॉटल सी नजर आ रही है।

और यह बहुत बड़ी शॉप लग रही है और पीछे की ओर कुछ ग्रीन ग्रीन पेड़ नजर आ रहे हैं यह--

सामने सड़क जा रही है और उसके सामने एक गेट दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी खड़ा होआ हुआ है।

और पीछे बहुत सारी लाइटे भी दिखाई दे रही हैं और--

पीछे की ओर ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है।

इस इमेज में बहुत बड़ी सेप नजर आ रही है।

और इसमें बहुत सारे गमले भी दिखाई दे रहे --

इस तस्वीर में एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

रेड कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है।